यह एक बहुत बड़ा खेत है।

एक आदमी एक आदमी एक अमरुद दिख रहा है।

और इंग्लिश में कुछ उसपे लिखा हुआ है बोर्ड पर।

और दो तीन गाड़ी भी खड़ी हुई है रस्ते पर।

और एक ट्रक भी खड़ा है जो कि उस पर कुछ लावे का बहुत ही वजन है।

और एक कांच का गेट लगा हुआ है।

और दो गेट लगे हुए हैं।